बिल्डिंग में बहोत सारे खिड़कियां बने हुए है।

यह एक सिनेमा घर का तस्वीर दिखाई दे रहा है।

यह एक सुपर मार्केट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

घास के ऊपर कुछ लोग भी बैठे हुए दिख रहे हैं।

यह एक लाइब्रेरी की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यह एक बेडरूम का तस्वीर दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहोत सारे गमले में पौधे रखे हुए दिख रहे हैं।